इस फोटो में मुझे बिजली की तार दिखाई दे र--

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे पार्क दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे बड़ी सी टेबिल दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे लाइट की सजावटे दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे लोहे की --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

इस फोटो में मुझे बिजली की तार दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे साइकिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गैरेज की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बेड दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे चारों तरफ लोहे की जालियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है।